बगल में घांस है और ऊपर ब्लू कलर है घड़ का।

और बगल में एक पेड़ है नीचे गाड़ी लगा हुआ है।

बगल में आदमी और ढेर सारा बच्चा खेल रहा है।

येलो लाइट जल रही है यहाँ पर दो टेंट ठो कार है टेंपो है कुछ लोग है।

यह एक जिम है यहाँ पर बैलून है बैलून का कलर वाइट है।

चेयर का कलर ब्लैक है और बगल में वाइट दीवार है।

और खिड़की है खिड़की का कलर ब्राउन है।

और बगल में पोस्टर है पोस्टर का कलर येलो है और गेट हैं गेट खुला हुआ है।

यहाँ रूम है यहाँ पर तीन आदमी खड़ा है और वो चेक शर्ट पहने हुए उसका कलर वाइट है और रेड है।

यह एक सब्जी बाजार है | यहाँ पर सब्जी बिक रहे हैं टमाटर बिक रहे --

यहाँ पर टावर है टावर का कलर वाइट है और कुछ लोग सब्जी ले रहे हैं |

स्टैचू के पीछे एक घर है घर के बगल में एक पेड़ है और यहाँ पर कुछ --

बगल में दो थो पोल है और बगल में एक घर है और उसमें कुछ बाँस लगे हुए है उसके बगल में एक गाड़ी है |

यहाँ पर एक रोड है रोड पर कुछ लोग काम कर रहे हैं।

और येलो पर्दा है और फूल लगा हुआ है वाइट कलर का।

उसके बगल में एक लड़की है उसका टी-शर्ट का कलर येलो है।

यह एक मंदिर है मंदिर में कुछ लाइट लगा हुआ है वहाँ पर दो आदमी है।

यह एक बुलेट का दुकान है यहाँ पर बुलेट है और नीचे कुछ गाड़ी है उसका कलर ब्लैक है।

और ऊपर रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर तार है और नीचे एक कार लगा हुआ है |

उसके गाड़ी है गाड़ी का कलर ब्लैक है और वो लड़ आदमी है | उसका शर्ट का कलर येलो है ।

और इसका ब्लैक कलर है | उसके बगल में रेड कलर का कपड़ा है | उसके ऊपर में पेड़ है |

झोपड़ी है झोपड़ी का कलर ब्राउन है उसके बगल में बांस का पेड़ है।

यह एक पुल है पुल के नीचे नदी है नदी में पानी है।

और बगल में चार पिलर है पिलर के पास एक लड़का है।

ग्राउंड है यहाँ पर और बारिश हो रही है और जमीन भींगे हुए हैं।

अ बिल्डिंग में बहुत सारे रूम है उसके बगल में टंकी है।

यह एक दुकान है दुकान में बहुत सारे किताब रखे हुए हैं।

ह कट-कट घर में दो-तीन खिड़की है।

और गाड़ी के बगल में है उसके बगल में एक झोपड़ी है और जमीन है और जमीन पे गाड़ी रखी हुई है।